पर्ल में फंक्शन्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
पर्ल फंक्शन्स
आर्गुमेंट्स के साथ फंक्शन्स
रिटर्न वैल्यूज के साथ फंक्शन
इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ
उबंटु लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम
पर्ल 5142 और
gedit टेक्स्ट एडिटर
आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट editor उपयोग कर सकते हैं
आपको पर्ल में वैरिएबल्स कमेंट्स लूप्स कंडिशनल स्टेटमेंट्स और डेटा स्ट्रक्चर्स का सामान्य ज्ञान होना चाहिए
कृपया संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
हम पहले कुछ साधारण पर्ल फंक्शन्स देखेंगे
पर्ल में फंक्शन को subroutines भी कहा जाता है जो sub keyword के साथ घोषित किये जाते हैं
घोषित फंक्शन की परिभाषा कर्ली ब्रेसेस के मध्य लिखी जाती है
यह फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं लेता है
और यह कुछ भी रिटर्न नहीं करता है
ध्यान दें फंक्शन की परिभाषा को स्क्रिप्ट में कहीं भी या अन्य मॉड्यूल में लिखा जा सकता है
यह मॉड्यूल बाद में इस फंक्शन का उपयोग करके इस स्क्रिप्ट में सम्मिलित किया जाता है
स्क्रिप्ट में मॉड्यूल फाइल को सम्मिलित करने के लिए निम्न सिंटेक्स का उपयोग करना पड़ता है
use modulefilename सेमीकॉलन
सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके इसे समझते हैं
अपने टेक्स्ट एडिटर में फाइल को ओपन करें और इसे simplefunction dot pl नाम दें
यहाँ मेरी simplefunction dot pl फाइल gedit में है
स्क्रीन पर दिखाई गये कोड को टाइप करें
यहाँ हम केवल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसे हमने परिभाषित किया है
फिर निष्पादन कंट्रोल उस फंक्शन में पास हो जाता है
यह फंक्शन का डिक्लेरैशन और परिभाषा है
यह फंक्शन दिये गये टेक्स्ट को प्रिंट करेगा
अपनी फाइल को सेव करें
फिर टर्मिनल पर जाएँ और perl simplefunction dot pl टाइप करके
पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
और enter दबाएँ
आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
अब आर्गुमेंट के साथ फंक्शन देखते हैं
एक सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके इस फंक्शन को समझते हैं
अपने टेक्स्ट एडिटर में फाइल खोलें और इसे functionwithargs dot pl नाम दें
यहाँ मेरी functionwithargs स्क्रिप्ट gedit में है
कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है
यहाँ हम आर्गुमेंट्स 10 और 20 के साथ एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं
पास किये गए आर्गुमेंट्स $var1 और $var2 में मिलते हैं
@_ एक विशेष पर्ल वेरिएबल है हम इसे पूर्ण रूप से आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे
यह फंक्शन दो वेरिएबल्स का जोड़ करता है और उत्तर प्रिंट करता है
अपनी फाइल सेव करें
@_ एक विशेष पर्ल अरै है
इस अरै का उपयोग पास किये गये आर्गुमेंट्स को संचित करने के लिए किया जाता है
इसी तरह हम वेरिएबल में पास किये गये आर्गुमेंट्स को पा सकते हैं जैसे
$var1 space = space shift @_ सेमीकॉलन
$var2 space = space shift @_ सेमीकॉलन
shift @_@_ array अरै से पहली पॉजिशन पर एलिमेंट हटाता है
और इसे वेरिएबल में निर्दिष्ट करता है
दूसरा तरीका है $var1 space = space dollar underscrore ओपन स्क्वेर ब्रेकेट zero क्लोज स्क्वेर ब्रेकेट सेमीकॉलन
$var2 space = space dollar underscrore ओपन स्क्वेर ब्रेकेट 1क्लोज स्क्वेर ब्रेकेट सेमीकॉलन
उपर्युक्त वर्णित तरीका इंडेक्स का उपयोग करके @_ array के एलिमेंट्स को फेच करने के समान है
अब टर्मिनल पर जाएँ और perl functionwithargs dot pl टाइप करके
स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएँ
output screen पर प्रदर्शित होता है
अब वह फंक्शन्स देखते है जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं
इसे एक सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं
gedit में funcwithsinglertrnval dot pl स्क्रिप्ट पर जाएँ
अपने टेक्स्ट एडिटर में फाइल खोलें और कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसा दिखाया गया है
यहाँ हम पैरामीटर्स 10 और 20 के साथ addvariables फंक्शन कॉल कर रहे हैं
फंक्शन की रिटर्न वैल्यू $addition वेरिएबल में मिलती है
यह फंक्शन पास किये गये पैरामीटर्स का जोड़ करता है और उत्तर दर्शाता है
file सेव करें
स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
अतः टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें
perl funcwithsinglertrnval dot pl और एंटर दबाएँ
आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होता है
अब वह फंक्शन देखते हैं जो मल्टिपल वैल्यूज़ रिटर्न करता है
इसे एक सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं
gedit में मैंने फाइल खोली है और इसे funcwithmultiplertrnvals dot pl नाम दिया है
कृपया अपने टेक्स्ट एडिटर में इसी तरह करें
अब कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसा दिखाया गया है
यहाँ हम पैरामीटर्स 10 और 20 के साथ addvariables फंक्शन कॉल कर रहे हैं
फंक्शन की रिटर्न वैल्यूज $var1 $var2 और $addition वेरिएबल में मिलती हैं
यह फंक्शन जोड करता है और पास किये गये पैरामीटर्स रिटर्न करता है और परिणामस्वरुप उत्तर प्रदर्शित करता है
यह वर्णन दर्शाता है कि फंक्शन से अरै रिटर्न कैसे करें
इसीतरह यह दर्शाता है कि हैश को फंक्शन से रिटर्न कैसे किया जा सकता है
अपनी फाइल सेव करें
अब perl funcwithmultiplertrnvals dot pl टाइप करके टर्मिनल पर
पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
और enter दबाएँ
आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होता है
पर्ल कुछ इनबिल्ट फंक्शन्स प्रदान करता है
उनमें से कुछ हमने पिछले ट्यूटोरियल में सीखे हैं जैसे arrays hash sort scalar each keys आदि
इनबिल्ट फंक्शन्स कॉल करना किसी अन्य फंक्शन को कॉल करने के समान है जिसे हमने परिभाषित किया
अर्थात sort open bracket @arrayname close bracket semicolon
हमारे द्वारा उपयोगित सेम्पल प्रोग्राम्स में कुछ इनबिल्ट फंक्शन सम्मिलित करने का अभ्यास करें
और उनके आउटपुट्स का निरीक्षण करें
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
सेम्पल प्रोग्राम्स का उपयोग करके पर्ल में फंक्शन्स
आर्गुमेंट्स के साथ फंक्शन्स और
फंक्शन्स जो वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं
यहाँ आपके लिए नियत कार्य है
एक फंक्शन लिखें जो तीन आर्गुमेंट्स लेता है
इन आर्गुमेंट्स पर कुछ कार्य करें
आर्गुमेंट्स पर क्रियान्वित कार्य का परिणाम रिटर्न करें और उसे प्रिंट करें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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
आशा करते हैं कि आपने इस पर्ल के ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद